वन का उपयोग किया गया है तथा नीचे फ्लोर के ऊपर वाइट कलर के टाइल्से लगी है वहाँ सामने हमें सफेद कलर का बैनर दिख रहा है जिसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है तथा छत पे हमें वो गोल्डन कलर के पंखे नजर आ र --

उसके साइड में हमें एक बैनर दिख रहा है जिसके ऊपर लाल कलर लगा हुआ है वहाँ पे हमें कुछ न कुछ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है तथा मंदिर के ऊपर हमें बहोत से झंडे दिख रहे है जो की लाल कलर के --

वहाँ आर्टिफिशियल कोकोनट ट्री भी लगे हुए दिखाई दे रहे है वहाँ पर बहुत सारी लाइटे जलते हुए नजर आ रही हैं और बहुत बड़ा हॉस्टल है।